काडा दा रंग अलग अलग है।

मिस्त्री ने सीढ़ियों और--

आईसक्रीम की तस्वीर है।

इस तस्वीर में हमें एक--

अलग अलग है और किताबें का--

सेलिब्रेशन की तरफ से लाइटों और--